उसकी राइट साइड कूछ ट्यूब लाइट भी लगी हुए है ऊपर एक पेड़ लगा हुआ है।

सामने बहुत सारे ड्रेस रखे हुए है जोकि पन्नी मे पैक है और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे है।

सामने एक बड़ा सा गार्डन है इसकी आइड साइड बहोत सारी बाउंड्रीज बनी हुई है।

यहाँ पर तीन - चार कमरे और कुछ एसीयां भी लगी हुई है।

यहाँ पर दो-तीन स्पीकर भी रखे हुए हैं और एक मूर्ति भी रखी हुई है।

यहाँ पर कुछ मूर्तियां और कुछ पुरानी तपेलिया भी रखी हुई है पुराने जमाने की--

एक वाइट कलर की है एक ग्रे कलर की है एक ब्लैक कलर की है।

सामने एक रोड है यहाँ पर बहोत सारी स्कूटी --

प्रेस के साइड में एक पानी की बोटल है यहाँ पर कांच के कुछ डोर्स है।

यह क्लास रूम है यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं जो की पेपर दे रहे हैं।

सामने एक शेर की मूर्ति है जो की ब्लैक कलर की है और--

यहाँ पर बहुत सारे फूलों की माला भी है जो की पिक एंड येलो एंड रेड एंड व्हाइट कलर की है।

यहाँ पर कुछ फुग्गे भी लगे हुए है यहाँ पर सामने एक लड़की खड़ी हैं।

एक लड़का खड़ा है जो कि गाने बजा रहा है और नीचे कुछ तार दिख रहे हैं।

और कुछ पत्थर रखे हुए हैं और किसी लकड़ी के डब्बे रखे हुए हैं।

उनके राइट हैंड साइड कुछ और लोग भी बैठे हैं।

उसके हर साइड सीरीज ही सीरीज लगी है इसके राइट एंड लेफ्ट साइड बड़ी - बड़ी बिल्डिंगस एंड दुकानस भी है।

ऊपर तीन चार पंखे और अअअ कुछ लाइट्स भी लगी हुई है।